ये एक टीवेन्टी फाइव टीवेन्टी फाइव डिटेन --

ये सब्जी मार्किट का सब्जी है निम्बू टमाटर गाजर बेंगन--

बोत अच्छे से ओपरेशन चल रहा है।

एक कटिंग कर रहा है और एक आ कुछ धो रहा है सफाई कर रहा है बहर लोग बैठे हुए है वेट कर रहे है।

ये जिम एरिया है लोग जिम कर रहे है ट्रेनर भी खड़ा है देख रहा है।

ये एक तिन्सा आइस क्रीम है यहा बहोत सारे तिन्सा--

इनको खाने को कुछ खाने को दीया जा रहा है लोग ये--

देख कर कुछ कुछ लाते है इनके लिए चना वगेरा खाना ने के लिए--

ये स्कूल है स्कूल में बच्चे क्रेटिव कर रे है।

ये गार्डन एरिया है बोहोत अच्चा हरा भरा गार्डन है।

और एक साइड चलने का एरिया भी है एक साइड गार्डन भी--

और यहा आईडियास वेगर मिलते है।